जिसके बाहर एक बैनर लगी हुई है जिसपे एच_डी_एफ_सी बैंक लिखी हुई है।

बहुत सारे कमरे के दरवाजे और खिड़कियां दिख रही हैं।

एक बाइक पार्क की हुई है।

जहां पे बहुत सारे परफॉर्मर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर टेबल और चेयर लगे हुए है चेयर प्लास्टिक के लगे हुए है।

एक विंडो दिख रही है जिस पे कर्टेन्स लगाए हुए हैं।

जहां पे बहोत सारे चेयर और टेबल लगे हुए है।

सिटिंग बेंच लगे हुए है जिस पे बहोत सारे व्यक्ति बैठे हुए दिख रहे हैं।

एक फ्लैग होस्टिंग पॉइंट दिखाया गया है जहां पर ए--

दो रेड कलर की चेयर रखी हुई है।